यह यहाँ पे जी कुछ लोग जिम कर रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे कुर्सियां रखे हुए हैं।

सामने घर दिख रहा है। घर के बाहर दो बाइक खड़े हैं।

कुछ लोग सीढ़ी में ही खड़े हैं।

यहां पे सामने एक दुकान है।

यहां पे मशीन भी लगाया हुआ है।

यहां पे बहुत सारे तार खींचे हुए है सामने एक घड़ी दिख रहा है।

यहां पे जाली मारा हुआ है।

सामने पहाड़ भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे तार खींचे हुए हैं।

लाइट के ऊपर बहुत सारे तार खींचे हुए हैं।

बिल्डिंग में लिखा हुआ है एयरटेल फोर जी श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर

यहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं।

यहां बाउंड्री मारा हुआ है।

यहां पे सींढ़ी दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे बोड़े रखे हुए हैं।

और हाथ में एक एक कैंडल लिए हुए हैं।

यहां पे दिया जला हुआ है।

यहां पे सामने एक बाइक दिख रहा है।

सामने पहाड़ दिख रहा हैं।

यहां पे एक पंखा लगाया हुआ है।